कुछ बाल्टियाँ रखी हैं एक नीली बाल्टी रखी है।

नीचे इ-रिक्शा खड़ा है और कुछ मोटरसाइकिलें खड़ खड़ी हैं।

सूर्य दिख रहा है नदी में पानी वाला जहाज दिखाई दे रहा है मौसम साफ़ है।

और कुछ लड़के खड़े हैं दो पिली शर्ट पहने है एक बिजली का खम्बा दिख रहा है पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है उस पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।